हमें एक नाव दिखाई दे रही है जिसमें एक लकड़ी का वो रखा हुआ है इस इमेज में हमे नाव बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस इमेज में हमे पानी दिखाई दे रहा है बहुत सारा--

इस इमेज में हमें चारों तरफ बहुत सारी हरियाली दिखायी दे रही है यहाँ पर हमें एक बादल दिखायी दे रहा है जो नीले कलर का दिखायी दे रहा है ऊपर--

रेड कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें हरे कलर की डली हुई है रेड कलर का पट लगा है यहाँ हमें एक महिला दिखाई दे रही है पुरूष दिखाई दे रहे है गमले दिखाई दे रहे है इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है यहाँ पर हमें मंदिर के निचे फोटो भी दिखाई --

हमको बहुत सारे सनराईज पब्लिक स्कूल दिखाई दे रहा है इसमें दो -तीन पेंटिंग बनी हुई है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर हमको--

ए ए देखने में हमें नदी दिखाई दे रही है इसमें हमें एक रोड दिखाई दे रहा है दिखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा--

इस इमेज मे हमें ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है देखने में बहुत अच्छा दिखायी दे रहा है इस इमेज में हमें स्टेशन दिखायी दे रहा है यहाँ पर हमको बहुत सारी पटरी दिखायी दे रही है देखने में बहुत अच्छा दिखायी दे रहा हैं। --

इस इमेज मे हमे साक्षी मेंडिकल स्टोर दिखाई दे रही है इसमें हमें एक और भी शॉप दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे--

एक ब्रिज दिखायी दे रहा है ऊपर हमको नीले कलर का आसमान दिखायी दे रहा है दिखने में हमें बहोत अच्छा दिखायी दे रहा है पानी बहोत ज्यादा बह रहा है पर हमको नदी दिखायी दे रही है स्वीमिंगपूल दिखायी दे रही है हं हं बहोत अच्छा दिखायी दे रहा है हमें स्वीमिंगपूल जैसा अभी नहीं या समुद्र जैसा--